यहाँ पर बहुत ही सारा ग्राउंड दिखाई दे रहा हैं यहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति भी दिखाई दे रहे हैं।